बैनर लगल ह। उ ज प के गिरजा घर लिखल ह। एके आदमी खड़ा हल। लइका जनकी मुसलमान लगत ह अर एखो टे टोटो ह। ओकरे बगल में --

कॉफी राज कॉफ़ी विथ राज लिखल ह यहाँ एक लईकी बइठल ह पियर रंग का सूट पहिन लेके लइका --

स्टूडेंट ह जवन कि पूरा ऊपर करिया- करिया लगल ह। अंडर ग्राउंड शीशा लगल ह। पूरा एक ठे आदमी चाय पियत ह एक लइका कुछ खात ह एक ठे लइकी ऑरेंज कलर का टीशर्ट पहीनले करिया रंग --